यहाँ पीछे बहुत सारी कारे दिखाई पड़ रही है जो की व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रही हैं| एक वेन दिखाई पड़ रही है जो की ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रही है| पीछे कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहे हैं| एक खंबा दिखाई दे रहा है जो की व्हाइट कलर में लगा है| सामने कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

यहाँ सामने एक गुंबज जैसा बना हुआ है जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है| साइड में एक मीनार जैसी दिखाई पड़ रही है| पीछे कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं जो की ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है| यह पूरा घर व्हाइट कलर में है| नीचे एक दरवाजा दिया हुआ है। सा--

सामने एक खिड़की भी दिखाई पड़ रही है| पीछे कुछ पेड़ो का कलर ग्रीन कलर ब्लैक कलर में दिख रहा है।

सामने एक दरवाजा दिखाई पड़ रहा है जिसमें कांच का लग हुआ है उसके पीछे नीला बॉर्डर लगा हुआ है| साइड में एक सीढ़ी जैसा दिखाई पड़ रहा है| वहाँ पर एक आदमी खड़ा है उसने वाइट कलर की शर्ट पहना रखी ब्लैक कलर की पेंट पहन रखी | उसके हाथ में एक हेलमेट दिखाई पड़ रहा है| सामने एक बोर्ड जैसा दिखाई पड़ रहा है।